इस तसवीर में मुझे कुछ वाहन दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ बोर्ड दिखाई दे रहे है।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

यहां मुझे दो टेबल दिखाई दे रही हैं।